यहां किसी घर में काम हो रहा है दू गो मिस्त्री यहां हाथ में हथोड़ी और छेनी लेकर --

दिवार में छेद कर रहें हैं या कुछ काट रहें हैं लगता है कोई डिजाइन बनाएंगे मिस्त्री लोग लाल रंग का ऊपर से कपड़ा हैं।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

सामने एक बाइक खड़ा है जिसका नंबर बी.आर. अट्ठाइस सी छत्तीस पैतालीस है।

यह कोई एक छोटा सा रेलवे ह् स्टेशन है जिसको हाल्ट कहते है यह एक ट्रैन यहाँ पे आकर खड़ा है।

यह कोई गोदाम है जहाँ पे बहुत सारा बोरा में अनाज या कोई सामान रखा हुआ है एवं ट्रक लगा है जिसमें एक आदमी खड़ा है लगा के --